जहां पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक ट्रेन दिखाई दे रहा है।

सीढ़ी भी दिख रही है।

जमीन पर मार्बल भी लगा हुआ है।

और कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिनका कलर ग्रीन है।

जिसका कलर व्हाइट है बहोत सारे लैपटॉप और सी_पी_यू नजर आ रहे हैं।

कुछ गमले भी दिख रहे हैं जिनका कलर व्हाइट और रेड है।

बहोत सारे व्यक्ति भी नमाज पढ़ रहे हैं जिनके--

ऊपर आसमान नजर आ रहा है जिसमें कुछ बादल छाए हुए हैं।